इस हॉल में मुझे इस एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है। हॉल में बहुत सारे कुर्सिया और सोफ़े लेगे हुए दिखाई दे रहे है जो की व्हाइट कलर के है।

एक आदमी और बहुत सारे आदमी पीछे दिखाई दे रहे है।

हम्म और मिट्टिसी दिखाई दे रही--

और ये बोतल दिखाई दे रही है और बहुत सारा समान ऊपर टांगा हुआ दिखाई दे रहा है एक दो तीन चार पाच डब्बे ऊपर रखे हुए दिखाई दे रहे है।